यह एक मंदिर है जिसके अंदर एक मूर्ती हैं और उसके आगे लोग बैठे हैं हाथ फैलाए --

यह एक बड़ा का ट्रेड है जिसके अंदर मिकी माउस लगे हुए हैं बहोत सारे लोग इधर उधर फिर रहे हैं एक सामने --

शॉप मे खड़ी है इसके अंदर लाल कलर की एक बाल्टी और एक व्हाइट कलर की बाल्टी दिखाई दे --

यह कमरे के अंदर है कमरा बहुत अच्छा है वाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

यह एक चौराया है जिसके आगे बहुत सारी गाड़ियां और टेंपो खड़े हैं और एक --

इसके अंदर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है जो की एक मीटर के पास लगी हुई है इसमें एक मीटर है वो खराब है।

और ऊपर एक जाली की छत लगी हुई है जिसके ऊपर लाइटे टंग रही है और साइड में एक ए_सी लगी हुई है जोकि नहीं चल रही है अभी बंद है।

और इसके आगे एक ब्रिज बना हुआ है जिसके ऊपर कोई साधन नहीं है इसके नीचे से साधन जा रहे हैं।

और यह एक फैसन की दुकान है जिसके आगे एक फ्रॉक टंगी हुई है एक लेडीज पेंट टांगी हुई है एक टी शर्ट है।

यह एक दुकान है आटा पिसाई की मिल है जिसके एक आदमी सर पर सपा बांधे खड़ा है और आसपास में बहुत सी--

इसके बाहर बहुत से लोग खड़े हैं आधी लेडिज है जिनके आधो के फेस दिख रहे हैं आधों के नहीं --

यहां ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है और पीले रंग का भी है और पीले कलर की लाइटें जग रही है और आस पास मे बहोत सारे चा लाइट --